एक लड़का अपने सकल मे हाथ रखा हुआ है। और कुर्सी ब-बेग रखे गये है। एक लड़का जो है फोन चला रहा है।

और ई चारो तरफ पेड़- पौधे हरी पत्ती है काले रंग का आसमान है लाईटे लगाई गयी है एक बोर्ड लगा हुआ जो लाल रंग की है।

और दीवाल है सफेद रंग की नीले रंग की दीवाल हैखंभा गड़ा हुआ जो कत्थे रंग का चारों तरफ पेड़ पौधे हरी पत्ती हे खंभे खड़ी हुई जिसके उपर से तार गई हुई हे बगल मे एक लड़के खड़े हैजो ए जो काले रंग के हे और लाल रंग के कपड़े पहने हुए है।

बहुत सारे लोग खडे हुए है जो सेलफी ले रहे है दो लड़की हे तीन लड़के है लड़की ने--